यहाँ पर एन्वॉयरन्मेंट भी अच्छा हैं।

लोग रूम पे भी रेंट पे भी रहते हैं।

बहुत प्यारा एनवायरोनमेंट लग रहा है यहाँ पे पत्थर रखी हुई है।

यहाँ पे इसका ओनर भी नहीं दिख रहा हैं कस्टमर भी नहीं दिख रहा हैं।

बस बहुत डराबना टाइप लग रहा हैरात में कोई इंसान यहाँ पे जा ही नहीं सकता।

यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ हैं बुक्स बुक्स पढ़ रहा हैं आई थिंक ये स्टूडेंट हैं ए.टी.एम पे यहां भीड़ भी लगी हुई हैं।

जो ट्रैन का वेट कर रहे हैं कोई लेटा हुआ हैं कोई खड़ा हुआ हैं कोई कोई सोच रहा हैं।

ये स्कूल ग्राउंड गार्डन भी हो सकते हैं जंगल तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर बस नहीं खाना खेत टाइप में बना हुआ है।

बिल्डिंग के यहाँ जेबिसि खड़ी हुई हैं साइकिल खड़ी हुई हैं।

किसी स्ट्रॉबेरीस लग रही है ये।

और कुछ भी बोल सकते हैं पर मेरे कोह तोह स्ट्रॉबेरी लग रही हैं ये

यहाँ पे एक कान्हा जी की मूर्ति रखी हुई है।

मूर्ति बहोत प्यारी है वह एक लड़की हैं।

कुछ व्यक्ति बैठे हैं कुछ देख रहे हैं कुछ व्यक्ति--